यह महिला जो नृत्य कर रहे हैं और इसके अलग-वलग काफी साफ-सुथरा हैं और पीछे में एक बैनर भी लगा हुआ हैं।

यहाँ पे कुकिंग का काम हो रहा हैजो एक पुरुष कुकिंग बना रहे है।